ये इमेज किसी मंदिर की है जिस पर ऊपर तीन गोल गुंबज रखे हुए हैं और पीछे हमें बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहै है और दो --

एक दो कुर्सी पड़ी हुई हैंऔर पेड़हे भी बहुत सारी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं जो नीचे हमे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जमीन पर।

इस इमेज हमें रोड दिखाई दे रहा है एक घर दिखाई दे रहा है और घर के पीछे बड़े--

यह पेड़ के पत्ते नीचे बहुत सारे गिरे हुए दिख रहे हैं और पेड़ के पीछे हमें एक घर दिखाई दे रहा है ऊपर हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें बड़े-बड़े ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी कारखाने की पिक है म- पिक है जिसमें बहुत सारा सा --